पेड़ नजर आ रहा है इस फोटो म--

इस फोटो में स्टडी जोन लाइब्रेरी नजर आ रहा--

इस फोटो में मशीन अगर आ रही है इस फोटो में लोहा नजर आ र--

इस फोटो में बैंक नजर आ रही है।